और एक सामने की ओर जंगला दिखाई दे रहा है।

यह एक मिठाई की दुकान है।

और कुछ पहिए भी पड़े हुए हैं जिन्हें हाथ में उठाया जाता है।

यहां पर काफी लोग दिख रहे हैं।

यह एक प्रकार का स्टोर है।

इसमें कुछ मिठाइयां रखी हुई है।

इसमें कुछ आदमी भी दिख रहे हैं।